राज पन्नी पर लिखा हुआ है सायेद शर्ट अच्छा मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ हैं उस पन्नी पर व्हाइट कलर की --

अ अ यहाँ पे फुलकी बिक रही है। एक गईया खड़ी हुई है उसके बगल में एक आदमी भी है।

ये एक गैरेज दिखाई दे रहा हैमोटर्स सर्विस सेंटरस है जहाँ पर एक कार खड़ी हुई है सुधरने के लिए और ग्रे कलर की कार है।

दो आदमी लगे हुए हैं काम पर और ओइलिंग वगैरह रखे हुए हैं बस --